एक फोटो फ्रेम लगी हुई है यहां पे मेंज है।

यहां पे एक गोल गोल चक्का सा बना हुआ है। यहां पे यात्री खड़े हुए हैं।

यहां पे काले रंग का दरवाजा है जो लोहे का बना हुआ है।

गेस्ट हाउस दिखाई दे रहा है जहां पे बहुत सारी कुर्सियां पड़ी हुई है यहां पे एक पंखा लगा हुआ है।

यहां पे ट्रॅक्टर दिखाई दे रहा है पीछे थ्रेसर है जो पीले और हरे रंग का है।

इसमें तहे हुए कपड़े रखे हुए हैं बेल्ट भी है पाटे पे भी टंगे हुए हैं।